एक फूल दिखाई दे रहा है उसके पीछे काले का-अ कब्बे राड दिखाई दे रही है यह लाल और सफ़ेद कलर की--

है और यहा पर सामने लाल-लाल कलर की छोटी-छोटी दिवारे नज़र आ रही है।